एक सामने ब्रिज बना हुआ है जिस के नीचे पिलर लगे हुए है और उसके नीचे बहुत सारे पत्थर रखे हुए है।

निचे बहुत सारे पाइप लगे हुए है जोकि रेड कलर है नीचे कीचड़ भरा हुआ--

नीचे बहुत सारे पिलर बने हुए है चर्च के बाजू से घर बना है व्हाइट कलर से पेंट हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे पेड़--

दो ठो पिलर लगाए गये हुए है और ब्लैक कलर मार्वल लगे हुए है और अंदर चेयर बिछी हुई है रेड कलर की।

और सारी रॉड इसके ऊपर सीधी सी निकली हुई है और सामने लकड़ी से चोकोर सा कुछ बनाया गया है और लेफ्ट मे पन्नीया पड़ी--